यह टैंकर रिलायंस कंपनी का है।

यहां पर तस्वीर में हमें बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहें हैं।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

यह तस्वीर एक कमरों की है यहां पर बहोत सारे कमरे बने हुए हैं।

पर एक लोहे का गेट भी लगा हुआ है।

ये एक बंद कमरा है यहां पर ऊपर पंखे भी लग--

के चेहरे पर भी रंग लगा हुआ है यहां पर आस पास पेड़ भी लगे हुए है।

खेत में नीचे हरी भरी घास लगी हुई है।

यह तस्वीर एक फोटो स्टेट की दुकान की है यहां पर हमें स्टेशनरी और गिफ्ट आइटम्स का सामान भी मिलता है।

इस तस्वीर में एक बाहर मोटरसाइकिल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

के बाहर एक लड़का खड़ा हुआ है लड़के ने पीले रंग का साफ़ा ओढ़ा--

यह तस्वीर एक बहोत बड़े से गांव की है इस गांव में शटर वाले लोहे के मकान बने हुए हैं।

यहां पर आसपास लोहे का जाल भी लगा हुआ हैं जिसके आरपार पेड़ पौधे लगे हुएं हैं।

जिसका लेंटर नया पड़ा है जिसको स्पोर्ट देने के लिए नीचे बहुत सारे डंडे लगाए हुए हैं डंडे लकड़ी के हैं।

इस तस्वीर में हमें एक किरयाने की दुकान दिखाई दे रही है।

दो अ कार खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

ये अ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यह तस--

तस्वीर में हमें कुछ दोस्त इकट्ठे कैफे के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर आर के ब्रदर्स टायर वालों की है जो की टायर बेचती है।

इलाक़े में खड़ी होकर खींची है।